काफी बैल्यून्स लगे हुएं हैं। यहाँ मोबाइलों पर रिचार्ज होता है।

जो दूध से बनती हैं। दूध का खोवा बनाते हैं उसमें चीनी मिलाते हैं। उसके बाद मिठाई बनाई जाती हैं। इसमें बूंदी के लड्डू भी रखे हुए हैं।

ये एक सिटी है जिसमें काफी सारी बिल्डिंग भरी हुई हैं। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे होती हैं जिसमें की लोग रहते हैं ।

ये एक हरा भरा जंगल है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है। काफ़ी पहाड़ हैं वादियाँ हैं। काफ़ी सुंदर सा जंगल है। यहाँ हर प्रकार के पेड़ होते हैं।

इसको छिलकर के खाया जाता है। ये काफी स्वादिष्ट होती है। इसमें एक गुठली भी निकलती है जिसे खाया नहीं जाता उसे फेंक दिया जाता है।

काफी सारी सुंदर-सुंदर बोर्ड है।